इस तस्वीर में कुछ दुकानों को दिखाया गया है जो की कच्ची दुकानें हैं।

इस तस्वीर में एक इमारत है इमारत के ऊपर किसी होटल का नाम हिंदी में लिखा हुआ है।

इसके बाहर तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं तीन पुरुष है एक महिला है।

एक व्यक्ति जो है वो दफ्तर के दरवाजे के पास खड़ा हुआ है।

वह इस तस्वीर में कुछ पुरुष और महिलाएं जो कि कुछ कसरत कर रहे हैं।

प्लास्टिक का सामान पड़ा है और पाइप पड़े हुए हैं हरे--

पार्क के एक तरफ बड़े बड़े इमारतें दिखाई दे रही है।

खिड़कियों के उपर शीशा लगाया गया है और बाहर का दृश्य भी दिखायी दे रहा है।

दीवारों के ऊपर लकड़ी के बक्से लगाए गए हैं जिनके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

खिड़की है ऊपर एक छोटी सी छत बनाई हुई है।

एक तरफ एक लकड़ी का बक्सा है जिसमें की चार प्रकार की दालें रखी हुई है।

कुछ रैक बने हुए है जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार का राशन है।

दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।

एक मेज है जिसके ऊपर नीले रंग की चादर बिछाई हुई है।

एक पुरुष है जो बच्चों की निगरानी कर रहा है।